जैसे में येलो कलर का और ऑरेंज कलर का--

इसमें छोटे बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं।

जो लिखा हुआ है इस पे इंटर ।

यहां पर बड़ा सा फील्ड का दृश्य दिख रहा है।

एक येलो कलर का टी शर्ट पहना है और एक ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने।

स्विच लगाया हुआ है वाइट कलर का।

बगल में कुछ कुर्सी भी लगाया हुआ है।

यहां पर बड़ा सा फील्ड का दृश्य दिख रहा है।

बगल में आर_ओ लगाया हुआ है वह भी व्हाइट कलर का है।

यहां पर समुद्र का दृश्य दिख रहा है।

उस पर बैग का दृश्य दिख रहा है।

बहोत सारे लोहे का रेक बनाया हुआ है।

लोहे का रैक पे बोतल रखा हुआ है कंटेनर रखा--

कुछ पुरुष है कुछ महिला लोग हैं।

आसमान पूरा ब्लू है पानी भी पूरा ब्लू कलर का है।

बीच में जहाज है बड़ा सा व्हाइट कलर का।

उस पर कई सारे बुक का दृश्य दिख रहा है।

दिवाल पेंट किया हुआ है एक दीवार इंटा का बनाया हुआ है।

रेक में बहोत सारा डब्बा रखा हुआ है।

बगल में दिवाल ये सब पीली कलर का है।

पंडाल के अंदर मूर्ति का दृश्य दिख रहा है।

से रंग बिरंगो डिजाइनो से सजाया गया है।

रोड है रोड पर मार्किंग लगाया हुआ है।

रेक बनाया हुआ है लोहे का--

इसमें कई सारे रैक बनाए हुए हैं जो व्हाइट कलर का है।

इसमें कई सारे पे पत्थर ये सब हैं।

बगल में एक पुल बनाया हुआ है।

कुछ लोग हैं जो इधर उधर जा रहे है।

पीछे बड़ा सा फील्ड बनाया हुआ है।